यहां पे घास उग रही है यहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उग रहे हैं यहां पे खंभा लगा हुआ है यहां पे--

यहां पर एक आदमी जा रा उसके हाथ में एक--

यहां पे कुलर भी रखा हुआ है यहां पे पानी के कैंपर रखे हुए हैं यहां पे बहोत सारी कुर्सी रखी हुई है और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

निरमा यहां पे साबुन यहां पे बहोत सारी चीजें हैं यहां पे बहोत सारे डब्बे भी रखे हुए हैं।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई है एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है और बाइक भी खड़ी हुई है और सामने बहुत बड़ा पहाड़ है उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं।

रसोई है यहां पे प्लेट कटोरी चम्मच रखी हुई है यहां पे--

सड़क पर दो बाइक खड़ी हुई है।

सामने एक बड़ा सा पहाड़ उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

शेरा माता का पोस्टर लगा हुआ यहां पे बहोत सारे टेंपो बाइक आ जा रहे हैं यहां पे एक बच्ची सायकल पर जा रही है।

सामने एक रूम बना उसमें पाइपे लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सी बनाई हुई बैठने के लिए यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है यहां पे डस्टबिन भी रखा हुआ जोकि नीले कलर का है।